एक लड़की का दरवाज़ा भी लगा हुआ है। पीछे कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हम एक नदी दिखाई दे रही है। नदी पर कुछ लोग दिख रहे हैं। नदी के दूसरी तरफ पेड़ है।

और यहाँ पर हमे पास में कुछ बिलिडिंग्स दिखाई दे रही है और बाउंड्रीज भी दिख रही है। यहाँ पर हमें एक तार दिखाई दे रहा है और ईट भी दिखाई दे रही हैं।

यहाँ पर हमें एक शॉप दिखाई दे रही है जहाँ पर हमें एक बाइक दिखाई दे रहा है और कुछ कार्टून रखे हुए हैं और कुछ सामान भी रखा हुआ है।